ये हमारे कॉलेज का लाइब्रेरी है जो काफी बड़ा है और यंहा पे कंप्यूटर भी रखे गए है जिनके कारण आप कंप्यूटर पे भी पढ़ सकते है और बुक से भी पढ़ सकते है।

कॉलेज का फील्ड है जो काफी गंदा है अभी कॉलेज में छुटियाँ चल रही हैं जिसके कारण फील्ड को भी साफ नहीं किया जा रहा और फील्ड में पानी भी नहीं दिया जा रहा जिकसे कारण घास काफी सुक रहे है।

और ये फील्ड काफी गन्दा रहता है और ये फील्ड सिर्फ सा सन्डे को ही साफ़ होता है और यहां पे फील्ड में कोई भी एक मेंनेजर नहीं है।